और मुझे एक टेबल भी दिख रहा है जिसके ऊपर मुझे दो बुके भी दिख रहा है।

और इस रेस्टोरेंट के अंदर मुझे बहोत सारा सॉस भी दिख रहा है।

उस घर के बाहर मुझे एक गेट भी दिख रहा है जिसका रंग सफेद और नीला है।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

जिसमें एशियनपेंन कर के लिख के है फिर मुझे बहुत सारा पाइप और टीना भी दिख रहा है।

इस फोटो में मुझे एक जगह दिख रहा है।

फोटो में मुझे एक रोड दिख रहा है जिसमें मुझे एक बस दिख रहा है जिसका रंग हरा है।

उस बस पे बंदीपुर टाइगर रिजर्व लिख कर है उस बस के अंदर मुझे बहोत सारा आदमी भी दिख रहा है।

फिर उस दुकान के बाहर मुझे बहुत सारा बाइक भी दिख रहा है।

फिर मुझे एक छोटी लड़की भी दिख रही है जो उन लोगों के पीछे है।

मुझे बहुत बड़े बड़े पेड़ भी दिख रहे हैं।

जिसमें मुझे श्री राजेश्वरी बुक लिंक्स लिखकर दिख रहा है।

और बहोत सारा इलेक्ट्रिक वायर और पेड़ भी दिख रहा है।

जैसे कि मिर्चा नींबू अदरक बींस करेला और गोभी और मुझे एक बाइक भी दिख रहा है।

मुझे बहुत बड़े बड़े पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

मुझे बहुत सारा पेड़ पौधा भी दिख रहा है।

इस फोटो में मुझे एक रेस्टोरेंट दिख रहा है जो बहोत ही सुंदर तरीका से बनाया हुआ है।

मुझे एक इलेक्ट्रिक पोल भी दिख रहा है।

और उस बाइक के सामने एक रस्ता भी है।

इस फोटो में मुझे एक स्टेडियम दिख रहा है जिसका रंग सफेद है।

इस फोटो में मुझे एक लड़का दिख रहा है।

उस लड़के के पीछे मुझे बहुत सारा बड़ा बड़ा पेड़ और आसमान भी दिख रहा है।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

और उस कमरा का अंदर मुझे एक नीला रंग का सोफा सेट भी दिख रहा है।

फोटो में मुझे एक बहोत ही बरा बिल्डिंग दिख रहा है।

उस बिल्डिंग के ऊपर मुझे एमसी डोनाल्ड लिखकर दिखाई दे रहा है।

यह मुझे एक गेट भी दिख रहा है।

इसमें मुझे बहोत सारा आदमी दिख रहा है जो सफेद रंग के कपड़े पहने हुए हैं।

और टोपी और पगड़ी भी पहना हुआ है।

इसमें मुझे दवाई डॉक्टर लिखकर दिख रहा है।

उस के ऊपर मुझे एक वोट भी दिख रहा --

ये मुझे उस ढाबा के पीछे बहोत सारा घर भी दिख रहा है।